तस्वीर में एक ड्राईक्लीन की दुकान दिखाई दे रही है सामने एक सुजीकी खड़ी हुई है।

नेकलेश की फोटो दिखाई दे रही हैं।